जावा में मेथोड overloadingमेथड ओवरलोडिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे
मेथड ओवरलोडिंग क्या है
और मेथड को ओवरलोड करना क्या है
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
उबंटु वर्जन 1110 ओएस जावा डेवलपमेंट किट 16 और इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए
मेथड कैसे बनाएँ और इक्लिप्स का उपयोग करके जावा में ओवरलोड कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएँ
httpwwwspoken tutorialओआरजी मेथड ओवरलोडिंग क्या है
क्लास में समान नाम के साथ दो और दो से अधिक मेथड्स परिभाषित करें
वे संख्या या पैरामीटर्स के प्रकार में भिन्न होते हैं
इन मेथड को ओवरलोडेड मेथड्स कहते हैं
इस प्रक्रिया को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं
अब देखते हैं कि मैथड़ को ओवरलोड कैसे करें
इक्लिप्स में मेरे पास एडिशन
क्लास है
क्लास के अन्दर हम दो इंटीजर वेरिएबल घोषित करेंगे
अतः टाइप करें इंट आ इस इक्वाल्टो 10 एंड इंट ब इस इक्वाल्टो 5
इन दो इंटीजर्स को जोड़ने के लिए एक मेथड़ बनाएँ
अतः टाइप करें वॉइड एड पेरेंथीसेस
कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
पेरेंथीसेस में ab अतः यह मेथड़ हमें दो इंटीजर वेरिएबल्स का योग देता है
एक अन्य मेथड़ बनाएँ जो दो पैरामीटर्स लेता है
अतः टाइप करें वॉइड एडट्वोनंबर्स
पेरेंथीसेस में इंट नुम1 कॉमा इंट नुम2
फिर कर्ली ब्रैकेट्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नुम1 प्लस नुम2
अतः यह मेथड़ हमें दो वेल्यूस का योग देगा जो इस मेथड़ में आर्गुमेंट के रूप में पास किए गए हैं
क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएँ और मेथड्स को कॉल करें
अतः मेन मेथड़ में टाइप करें एडिशन जो क्लास का नाम है ओबीजे इस इक्वाल्टो न्यू एडिशन पेरेंथीसेस सेमीकॉलन
फिरObjadd और objएडट्वोनंबर्स पेरेंथीसेस में
हम दो आर्गुमेंट्स पास करेंगे
मानिए यदि हम फ्लोटिंग प्वॉइंट वेल्यूस पास करते हैं
तो टाइप करें 25 कॉमा और एक इंटीजर 3
हमें एक एरर मिलती है जो कहती है थे मेथोड एडट्वोनंबर्स इंट कॉमा इंट ओएफ थे क्लास एडिशन इस नोट एप्लिकेबल फोर थे आर्गुमेंट डबल कॉमा इंट
अतः हम क्या करेंगे कि मेथड़ में इंट के बजाय हम डबल देंगे
अतः इंट को डबल में बदलें
फाइल सेव करें
हम देखते हैं कि एरर ठीक हो गई है
हम यह भी जानते हैं कि जावा स्वतः इंट को डबल में बदलता है
अतः यहाँ हम एक इंटीजर आर्ग्युमेंट भी पास कर सकते हैं
अब प्रोग्राम को सेव और रन करें
आउटपुट में हम दो इंटीजर्स वेरिएबल्स का योग देखते हैं
और दो न्यूमरिक आर्ग्युमेंट्स का योग जो हमने पास किए
अब हम देखते हैं कि दोनों मेथड समान ऑपरेशन क्रियान्वित करते हैं
भिन्नता यह है कि पहले मेथड में कोई भी पैरामीटर नहीं है
जबकि दूसरे मेथड में पैरामीटर्स हैं
अतः इस तरह के केस में जावा हमें मेथड ओवरलोडिंग के साथ प्रदान करता है
अतः हमें यह करना है कि दोनों मेथड्स को समान नाम देना है
अतः एडट्वोनंबर्स को एड में बदलें और यहाँ भी बदलें
हम समान ऑपरेशन के साथ एक और अधिक मेथड परिभाषित करेंगे
अतः टाइप करें वॉइड एड
और पेरेंथीसेस में इंट एन1 कॉमा इंट एन2 कॉमा इंट एन3
अतः हमने तीन पैरामीटर्स दिए हैं
एक कर्ली ब्रैकेट्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
पेरेंथीसेस में एन1 प्लस एन2 प्लस एन3
अतः यह मेथड तीन नंबर्स का योग देगा
इस मेथड को कॉल करें
अतः टाइप करें ओबीजे डॉट एड 1 कॉमा 5 कॉमा 4 सेव और रन करें
आउटपुट में हम तीन नंबर का योग अर्थात 10 देखते हैं
अतः जावा कंपाइलर पैरामीटर्स पर आधारित सही मेथड को ओवरलोड करता है
यह पास किए गए पैरामीटर के प्रकार और नंबर की जाँच करता है
अतः प्रोग्रामर के रूप में हमें मेथड के नाम से घबराना नहीं चाहिए
न ही हमने नंबर या आर्ग्युमेंट का प्रकार पास किया है
हम एक अन्य मेथड बना सकते हैं जो स्ट्रिंग से जुड़ा हो
अतः हम एक और ओवरलोड मेथड बनायेंगे
टाइप करें वॉइड एड स्ट्रिंग एस1 कॉमा स्ट्रिंग एस2
कर्ली ब्रैकेट्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
पेरेंथीसेस में एस1 प्लस एस2
और हम इस मेथड को कॉल करेंगे
अतः टाइप करेंobj डॉट एड
पेरेंथीसेस के अंदर डबल कोट्स में हेलो कॉमा डबल कोट्स में स्पेस वर्ल्ड
अब प्रोग्राम को सेव और रन करें
अतः आउटपुट में हम देखते हैं हेलो स्पेस वर्ल्ड
अतः दो स्ट्रिंग आर्ग्युमेंट्स के साथ एड मेथड स्ट्रिंग से जुडता है
मानिए कि अब हम रिटर्न टाइप के साथ एड मेथड घोषित करते हैं
अतः टाइप करें इंट एड पेरेंथीसेस नो पैरामीटर और कर्ली ब्रैकेट्स
हमें एक एरर मिलती है यह कहती है डुप्लिकेट मेथोड एड इन टाइप एडिशन ऐसा इसलिए क्योंकि हमने बिना पैरामीटर्स के साथ एड मेथड पहले ही घोषित किया है
अतः ध्यान दें कि मेथड ओवरलोड करने के लिए पैरामीटर्स भिन्न होना चाहिए
भिन्न रिटर्न टाइप्स होना मेथड को ओवरलोड नहीं करेगा
अतः इस मेथड को हटाएँ और फाइल को सेव करें
इस तरह से जावा में मेथड ओवरलोडिंग करते हैं
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
मेथड ओवरलोडिंग के बारे में
मेथड को ओवरलोड करने के बारे में
और मेथड ओवरलोडिंग के लाभ के बारे में
स्व मूल्यांकन के लिए एक सब्ट्रैक्ट मेथड बनाएँ जो उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें
इसे ओवरलोड करें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
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं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
धन्यवाद